पर उपर ये नीला आसमान और नीचे हरी घास इस मंदिर की खूबसूरती को दुगना कर रहे है।

एक आदमी दिखाई दे रहा हैं।

इस दुकान की आकर्षण का केंद्र है।

ऊपर बोर्डस लगे हुए है जिसपर टी कॉफी एंड मोर हनी एंड ड्रायफ्रूट्स वैगैरह लिखे हुए।

बोर्ड लगे हुए हैं जिसपर इसका मेनू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने कॉफी मशीन्स है कॉफीज है।

ऊपर ये कैमरा दिखाई दे रहा है।

इस बिल्डिंग के बाहर एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में आपको पानी दिखाई दे रहा है एक साइकिल दिखाई दे रही--

कास और चारों तरफ ये हरे भरे पेड़ पौधे दिख रही है जिसमें बीच बीच में गुलाबी फूल पेड़ पौधों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

सुंदर दिख रहा है बहुत ही साफ दिख रहा है।

ऊपर ये आसमान नीचे ये पानी बहोत ही सुंदर लग रा--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

घास दिख रही है छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आस पास नदी गी बॉर्डर दिखाई दे रही है।

टाइल्स को साफ करने की लिक्विड्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर अलग अलग तरह का सामान दिख--

पॉट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर एक कारपेट बिछा हुआ दिख रहा--

यह तस्वीर एक शादी समारोह की लग रही है।

योगा कर रही हु पीछे स्कूल की बिल्डिंग भी दिख रही है।

गोभी दिख रही है हरी हरी सब्जियां दिख रही है।

और सब्जियां दिखने में बहुत ही ताजी लग रही है कुछ लोग सब्जियां खरीद रहे है।

एक जाली लगी हुई है दिख रही हैं सामने एक बिल्डिंग भी दिख--

यहां पर अलग अलग तरह की कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

पेटीएम के लिए एक बार कोड दिख रहा है।

ऊपर येलो और ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी ब्यूटी पार्लर की लग रही है।

क्रिमें कुछ फेशियल किट्स दिखाई दे रही है एक खिड़की दिखाई दे रही है।